पान दिख रही है ऊपर चिप्स बैगेरा का पैकेट टांगें हुए है और बिस्किट सेम्पु टांगे हुए है पंखा लग रहा है --

एक स्कूल दिख रहा है वहां पर खिड़कियां खिड़कियां गेट ही गेट दिख रहे हैं आगे गार्डन दिख रहा है।

गेट लगा है सफेद कलर का वो भी खुला हुआ है वहां पर और वहां पर पेड़ भी दिख रहे है पोस्टर लग रहा है स्कुल दिख रहा है जगह पड़ी हुई है खाली।

कुछ कम मकान दिख रहे है। दिख रही है। पेड़ खड़े हुए वहां पर जेंट्स बैठा है। एक एजेंसी है वो खड़ा हुआ है। वहां पे गाड़ी रखी हुई है।

ये दुकान दिख रहे है वहाँ पर कुछ समान टंगे हुए पैकेट चिप्स वैगरह के ब्लैक कलर में दिख रहा है एक दीवार बनी हुई है।

एक कंपनी दिख रही है बहुत बड़ी है वहाँ पे कांच लगे हुए लंबे-लंबे और गेट बना हुआ है और कांचों का बना हुआ है।